पीछे एक येल्लो और चॉकलेट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहोत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही इस बिल्डिंग मे छोटी बड़ी खिडकिया दिखाई दे रही है आसपास हरे भरे पेड़ पौंधे दिखाई दे रहे है।

शो रूम दिखाई दे रही है यहा पर बड़े से ऍडवरटाइसेमेंट का पम्पलेट लगाया गया है पोस्टेर्स भी दिखाई दे रहे है यहा पे सूर्य भी दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़ी शीशेकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी छोटी बडी खिडकीया दिखाई दे रही है लमपोस्ट भी दिखाई दे रहा बहुत सारे तारे दिखाई दे रही है आसमान नीला दिखाई दे रहा।

बहुत बड़ी मंदिर दिखाई दे रही है मंदिर की कलर व्हाइट है जिसमे छोटी बड़ी मूर्तिया भी बनाई गई है इस मंदिर में छोटी बड़ी खिड़किया दिखाई दे रही है यहा की जमीने कछी दिखाई दे रही है।

हरे भरे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है आसमान नीला दिखाई दे रहा है पीछे बड़े बड़े खंबे दिखाई दे रहे जमीने पक्की दिखाई दे रही है जमीनों पर हरे हरे पत्ते --

बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग की कलर ब्लू है इस में बहुत सारे एक खिड़की विंडो और दरवाजे भी दिखाई दे रही है इस में बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए है।

उसके पीछे एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पीछे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है यहाँ की जमीने पक्की दिखाई दे रही हैआसमान नीला दिखाई दे रहा है बादल छाया हुआ खूबसूरत मंजर है।

एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ अलग अलग टालिया बिछाई गई उन पर हरे हरे घास उगे है। यहाँ एक बीच मे बड़ासा फौवारा--